वहाॅं निचे गुल्फियां रखी हुई है।

यहां सफाई योजना चल रही है।

ये सब सफाई करते हुए बच्चे--

ये गार्डन है गार्डन में--

तीन लड़कियां नजर आ रीही है।

और एक लड़का खड़ा हुआ है।

एक लड़का कंप्यूटर की पीछे--

यहां साइंस लैब में--